ये बिजली की तार भी दिखाई दे रही है और ये बोर्ड भी लगा हुआ है।

ये कुछ ईटे वगेरा भी पड़े हुए हैं और टायर भी दिखाई दे रहा --

ये एक पोस्टर भी लगा हुआ है और खिडकियां भी लगी हुई दिखाई दे --

यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है जिसका कलर येलो है।

चेयर वगैरह भी रखी हुई हैं और कुछ पेड़-पोधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

दीवार का कलर हल्का पिंक हैं और यहाँ पे कुछ पैकेट्स वगैरह भी रखे हुए हैं। टेबल रखी हुई है। जिसके ऊपर कोई डब्बे वगैरह रखे हुए हैं।

ब्लैक है और हल्का रेड है और यहाँ पे एक प्लेट रखी हुई दिखाई दे रही है जिसका कलर बलैक --

हैं और नीचे जमीन दिखाई दे रही है।

पे कार भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है और कुछ बाइके भी रखी हुई --

रोड वी दिखाई दे रहा है और ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

चेयर भी रखी हुई हैं और टाइल्स बिछी हुई दिखाई दे रही हैं और लाइट भी जल रही हैं।